यह मकान बहुत सुंदर है। यह पीली कलर का है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी है। ये बहुत सुंदर दिखाई --

और वृक्ष पर जो पत्ते लगे हुए हैं हरा-भरा दिखाई दे रहा है।

बहुत दूर में फ़ैला हुआ है।